यहाँ पर एक कार दिखाई दे रही कार के सामने कुछ चैन लटकी हुई दिखाई दे रही एक अंकल उस कार में कुछ करते हुए दिखाई दे रहे है बाजु में ट्रक खड़ी हुई दिखाई दे रहे पेड़ लगे हुए पीछे दिखाई दे रहे।

यहाँ पर एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग की बॉउंड्री ही है यहाँ पर बिल्डिंग के बॉउंड्री के नीचे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसपे कुछ सामान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एक पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहा पर एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमे कुछ समान रखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके दोनों शटर खुले हुए बाजुमे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और आगे का फर्श भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक पार्किंग नजर आ रहा इस पार्किंग में एक स्टैचू बना हुआ दिखाई दे रहा उस पार्किंग के आजु-बाजु बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

यह एक रूम दिखाई दे रहा है जहां पर चेयर पर तीन-चार लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं एक आंटी स्पीच दे रही हैं रूम में लगे हुए बल्ब दिखाई दे रहे हैं।

पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के नीचे का गेट दिखाई दे रहा है जो फ़िलहाल अभी बंद है उसके बाजू में एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका गेट दिखाई दे रहा है उस बिल्डिंग में एक पेड़ नज़र आ रहा है फर्स पे एक कार है पैक दिखाई दे रही --

यहाँ पे एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के गेट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं मंदिर के आजु बाजू में कुछ फोटो लगे हुए दिखाई दे रहे हैं मंदिर की कुर्सियां दिखाई दे रही है बिजली के खम्बे के तार लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

उस मकान की सीढ़िया दिखाई दे रही है गेट बंद है दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर छत डरती हुई दिखाई दे रहा है मशीन लगी हुई दिखाई दे रही है लोहा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।